यहाँ एक रोड पर एक लोहे का टपरा जैसे रखा हुआ है।

सर मे लाल और सफेद गमछा बंद कर एक आदमी खड़ा हुआ है।

पेड़ और ये मकान ब्ल्यू कलर का है।

ओ_एन_ए वन लिखा हुआ है और स्पेसशिप का कुछ--

बहोत सारे बाहर में तीन कारे खड़ी हुई है और कुछ फूल्स वगैरा--

लगे हुए हैं और दो लोग यहां पर--

साड़ी पेहनकर फोटो खींचा रहीं हैं और तीन लड़के--

डाबर रेड पेस्ट नवरतन हेयर ऑयल बोरो प्लस और खांसी की सिरप बेनाड्रिल --

जो कुछ खराब हो गया है तो बनाने के लिए औजार रखे हुए हैं।

और ये ग्रीन कलर का फ्लावर पॉट है इसमें फुल डालकर रख रखते हैं और ये बहोत ही सुंदर दिख रहे हैं।

पैर में बहोत चोट आयी है और पैर में बैंडेज बंधी हुई है।

पेड़ वगैरह रखे हुए हैं और ये यहां लोहे के कुछ रॉड वगैरह रखे हुए हैं।

और वहां पर बहुत सारे लोग बैठकर कार्यक्रम देख रहे हैं स्टेज में कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहा है।